और ए_सी भी लगा हुआ हैं जिससे अच्छी ठंडी हवा आए।

जिसमे एक इंडिगो प्लेन लगी हुई है और एक व्यक्ति उसके साथ अपनी तस्वीर खीचवा रहा हैं।

इस तस्वीर को देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी के छत की ढलाई हो रही हैं।

उसमे बहुत सारे मजदूर मिस्त्री लगे हुए हैं और बहुत सारे छड से उस छत को बैंड किया गया हैं।

और वो व्यक्ति अपने हाथ में एक ब्लैक कलर की घड़ी पहना हुआ हैं।

और आइसक्रीम के फ्रिज भी रखी हुई हैं जिसमे तरह तरह कि आइसक्रीम भी होंगी।

इस तस्वीर को देख कर यह लगता हैं कि यह एक पार्क हैं जहाँ पे लोग बै अपने बैठकर बातचीत कर रहे हैं।

और आ मौसम का आनंद ले रहे हैं और बहुत सारे पेड़ो के ऑक्सीजन को ले रहे हैं।

जैसे की आप देख पा रहे हैं की साइड साइड में हरे भरे पेड़ हैं और नीला आसमान हैं।

इस तस्वीर को देख कर ऐसा लगता हैं कि यह एक टैटू की दुकान हैं।

जेन्ट्स और लेडीज की फोटो खीच रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे परिजन खड़े हैं।

और सामने में एक मिरर लगाया गया हैं जिसमे वो अपने बालो को अच्छे से देख के कटवाए--

एस तस्वीर को देख कर यह पता चलता हैं की यह एक छोटे बच्चो के कपड़ो की दुकान हैं।

जहाँ पे बहुत सारे स्पेस हैं और चेयर्स भी हैं जहाँ पे बच्चे अपनी स्टडीज को पूरा कर सकते हैं और पंखे भी हैं।

इस तस्वीर को देख कर हमें यह पता चलता हैं की यह एक साईं बाबा का मंदिर हैं।

इस तस्वीर को देख कर यह पता चलता हैं की यह तस्वीर किसी एक जिम का हैं।

और साइड साइड में मिर्रोर्स भी हैं जिस के कारण वो अपनी बॉडीस को फ्लेक्स भी कर सकते हैं।

और एक एक येलो कलर की आइसक्रीम और एक वाइट कलर की आइसक्रीम जिसपे काजू-किशमिश की छींटे हैं।